ये रोड का एक ढाबा है जिसमें हम देख सकते है कई सारे दस बारह पंखे लगे हुए है गाटर पट्टियाँ उप एक गाटर मतलब लोहे की वो है और कुर्सी टेबल बीछे हुए है कई सारे --

ये एक अ_दुकान है किनारे की काफी बड़ी यहाँ सभी अ प्रित्यो मतलब चीजों मिलती है यहाँ गली गली के लोग आते है यहाँ पर सब कुछ मिलता है ओ दूध दही छाछ।

यहाँ ये वो मशीन है जिनपे लोग दौड़ते है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ये--

और ऐ यहाँ पे कई सारे लोग इस तस्वीर में देखिये बोहत सारे लोग कई मात्रा में लोग यहाँ पे बैठे हुए है इसस्स बोहत ही बड़ी फील्ड मे और मिटटी का मैदान भी कहेंगे और--